यह देखिए बहुत ही बढ़िया दो साइड रोड हैं।

इतने सारे पिलरों में खड़े है।

यहां पे दो मंदिर है इस म और --

जगह बहुत खूबसूरत है।

और यहाँ पे बैलून से और अनेक परकार की चीज से सजाए गए हैं।

यहाँ पे देखिये बहुत ही खतरनाक एक शटर है।

बहुत सारे यहाँ बच्चे भी हैं।

ए सेफटिस हो गया हैं और जिंक का बोतल और फेविकुविक हैं।